पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक लड़की भी दिखाई दे रही--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

ये जो साइकिल है ये स्पोर्ट्स की साइकिल है।

इस फोटो में दिन का समय दिखाइ दे रहा है।